ये एक भगवान की प्रतिमा है जो की सोने का कलर का है।

यहाँ पे बहुत सारे मछली रखा हुआ है यहा पे कुछ लोग मछली को बेच रहे हैं यहाँ पे --

यहाँ पे एक लड़का टोपी पहना हुआ है।